यह तस्वीर बॉयज हॉस्टल की दर्शाई गई है जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं यह एक रात्रि का दृश्य दिखाया गया हैं।

यहां पर बच्चों के लिए सभी सुख सुविधाएं--